लोगो ने मास्क पहने हुए है कुछ लोगो ने कुछ लोगो ने नहीं भी पहने हुए है ये लोग लग रहा है विजिट करने के लिए आ रहे है।

धुप पड़ने की वजह से यह बहोत ही ज्यादा चमक रही है तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है यहां पे कुछ लोग भी आये हुए है कुछ लोग नीचे की तरफ है कुछ लोग ऊपर --

एक घूमने की जगह लगती हैऔर यहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं यहां पर तीन औरतें हैं जो कि अपने कपड़े को थोड़ी से ऊपर की तरफ करके नदी को पार करके जा रहे हैं एक लड़के के कपड़े से पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैउसने पूरा ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं जो की एक नाव देख रहे हैं।

आदमी नज़र आ रहे है यही लोग बिजी है ऊपर लाइट जल रही है घर जैसा बना हुआ है चीज़े है सामने की तरफ रखा हुआ है और --